हीरो का स्प्लेंडर प्लस मोबाइल है मोटर साइकिल है।

यह तो टोटो के एन सी का फोटो है टोटो को ई रिक्शा भी कहा जाता है ।

एक ही पिंजरा में सब तोता को बंद किया हुआ है नीचे वो बड़ा सा कटोरा में उसको खाने के लिए दाना दिया गया है।

इसमें वो बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है ये लोहा का ढांचा ए गो खेत में रखा हुआ है।

और बगीचा में बहुत सारा गेंदा का फूल लगाया हुआ है।

एक गो महिला एक गो पुरुष यहाँ खरा होके फोटो खिंचा रहा है ऊ लोग।

लड़का लोग उजला टी-शर्ट अ काला कलर का पेंट पहने हुए है एक गो स्टेज जैसा बना है जिस पे गेंदा का माला रखा है।

हैंडिल है हाथ पैसेंजर को पकड़ने के लिए जो पीला रंग से बना है लाल रंग का टोटो है इ बिना पेट्रोल डीजल के बैटरी की मदद से चलता है।

यह एक ठो खेल के मैदान का फोटो है । इसमें एक ठो उजाला ब्लू रंग का कपड़ा से टेंट बनाया हुआ है ।